इस घर में रेलिंग लगी हुई है इस घर के सामने ऊपर बॉउंड्री पर कुछ डिज़ाइन बनाई गई है पिंक कलर से --

एक टेबल रखी हुई है। टेबल पर कई कागज रखे हुए हैं। पेटीएम करने वाला ---

ट्रैक्टर के पास में पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ लगा हुआ है जिसके आसपास ईटो की --

इसमें बोहोत कीचड़ दिख रही हैं कही कही गद्दे और दिखाई दे रहे हैं।

ये एक तालाब है तालाब में बादल की परछाई दिख रही है इसके किनारे पे कई पेड़ लगे हुए हैं।

सफेद कलर के टाइल्स की दीवाल है इसमे हमे क्रीम कलर की गेट दिख रही है और इस गैलरी मे हमे लाइट भी दिख रही है नेम प्लेट लगी हुई है गेट के ऊपर ।